यह जगह काफी हरा भरा दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत सारे लोग गुमने फिरने के लिए आते --

यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने-फिरने के लिए आते हैं बहुत सारे पेड़ --

एग्जाम हॉल है यहाँ पे एग्जाम लिया जाता है अभी यहाँ पे बहुत सारे बेंच --

हमारे शरीर को योगा करना चाहिए योगा करने से --

यहाँ पे मकई की खेती की गई है यह मकई काफी बड़ा-बड़ा --

और मिस्त्री यहाँ पे देख रहा है की कितना गड्ढा हुआ है बहुत सारे लोग इस जहाँ पे हैं ।